पेट्रोल पंप के यहाँ लाइट जल रहीं हैं नीचे पेट्रोल पंप में दो लाइन खड़े हुए हैं।

देख सकते हो कि एक ग्राउंड है ग्राउंड के आजू-बाजू जो बैग रखे हुए है और देखोगे कि स्टाम्प के सामने फुटबॉल खेलते हुए बहोत टीम खड़ी हुई है।

कुछ लोग टहल रहे कार्पेट हरे कलर ऊपर --

देख सकते हो कि ये मकान बन रहा हुआ मकान के आजू बाजू देखो कि उनका भी काम हो गया आधा अधूरा--

देख सकते हो कि बुल्क बुक स्टोर है ये बुक शेल्फ है। सामने देखो एक एक लड़का एक व्यक्ति लिया है बुक जिसका फेस ही नहीं दिख रहा है।

देख सकते हो कि एक कैफे हैं। कॅफे के अंदर देखो किसीट लगी हुई है और बर्थडे पार्टी लगी हुई है। देखो बलुंस लगे हुए हैं। लाल पि लाल--

फिर सामने देखोगे कि चेंबियर है चेंबर के सामने देखो कि कुछ लोग बैठे हुए हैं।

ट्रेन जा रही है। बाजू बहुत पेड़ लगे हुए आसमान खुला हुआ है। देखो बिजली--

एक गो टिकिया रखी हो चिली पनीर रखी हो कुछ प्याज रखी हो कुछ स्लाइसेज रखे हुए हैं देख सकते हो उसके नीचे एक थाली है काली कलर की थाली में रखा हुआ है।

देखते हों कि सतीश जे किराना एवं जनरल स्टोर ।

देखोगे ये फुल मार्केट है फुल मार्केट में आपको हर प्रकार के फुल मिलेंगे गुलाब का फूल--

देख सकते होगे कि जय भोले मोबाइल है जय भेले मोबाइल है।

ये बाइक देखो कि स्कूटी देखो बहोत प्यारी है बहोत अच्छी लग रही--

डेकोरेशन हरे कलर का हुआ है फूल माला लगी हुई है उपर देखिए बिल्डिंग में पूरा फुल लगे--

उसके सामने साईकिल से एक भइया जा रहे हैं उसके सामने एक खंभा लगा हुआ है बाजू आजू में पेड़ लगे हुए--

एक व्यक्ति है जो सफेद शर्ट पहने जूते पहने खड़े हो के एक व्यक्ति दिख रहा है बुड्ढे से दिख रहा है।

देख सकते ग्राउंड है ग्राउंड के आजू बाजू देखो कि बहोत से पेड लगे हुए।

सोफा का है फर्नीचर रखे हुए हैं ये लकरियां रखी हुई आजू बाजू देखो उनके फर लकरियों से भरा हुआ ये कारखाना--

बहोत अच्छी नमकीन की दुकान है मैं बहोत बार आया हूँ देखो की इसमें--

ऑरेंज कलर के फुग्गे हरे कलर के फुग्गे तिरंगा वाले फूंगे लगे हुए है तिरंगा बहुत मजा आया है आप आओ नमकीन ले जाइए।

केले रखे हुए हैं संतरा है सन गर्मी का टाइम है तो संतरा तो होगा ही।

एक योगा कंपीटिशन हो रहा है जो योगा कर रहे कुछ लोग--

देखो ए_सी लगी हुई है देखो की सीलिंग वाइट कलर बहोत भयंकर पुति हुई है देखो एक ठो ब्लैक बोर्ड में कुछ समझा--

देख सकते हो कि दूर दूर तक एक पीला खंबा लगाओ पेड़ लगाओ बात क--

देख सकते हैं फेस्टिवल चल रहा है और प्रोग्राम चल रहा है कथक का--